यहां पर मुझे जिम दिख रहा है।

ब्लैक कलर में जिम के सामान दिख रहे हैं।

और यहां पर मुझे अ--

और यहां कुछ चेयर्स लगी हुई है।

और यहां मुझे दो लोग भी दिख रहे हैं।

और यहां पर मुझे मोमोज बर्गर फ्राइस वगैरह दिख रहे हैं।

जो ब्लैक कलर का दिख रहा है।

बड़ी-बड़ी सी बिल्डिंग्स दिख रही है।

और यहां मुझे दूर कुछ घर दिख रहे हैं।

पेड़ भी दिख रहे हैं।

और यहाँ मुझे ग्रीन कलर में--

यहां पर पेड़ भी दिख रहा--

और यहां कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं।

लिखा हुआ बोर्ड भी है जिसमें प्रवेश निषेध आम रास्ता नहीं है।

और यहां पर कुछ और पोस्टर भी लगे हुए हैं।

पाइप है और जिससे--

अम कुछ लोग दिख रहें हैं और यहाँ मुझे एक--

यहां पर मुझे बड़ा सा मंदिर दिख रहा है और जिसमें--

टेबल और एक जग और एक नमक का डब्बा सा दिख रहा है।